यह फोटो एक गंगा किनारे की है यहां पर ऊंची-लम्बी जाती सीढ़ियां --

अत्यधिक आकर्षित लग रही है राष्टीय ध्वज हवा में लहरा रहा है।

के सामने बड़े अच्छे लंबे पतले पेड़ है।